एक आदमी कमर पे हाथ ले रख के खड़ा है ब्लू रंग शर्ट पहना हुआ है एक आदमी अपना बच्चा को पडक के खड़ा है लाल कलर का।

ये एक कार सर्विस सेंटर है जिसमें स्टॉक कार केयर लिखा हुआ है एंड ये सुमित एग्रो पाटील का है लेफ्ट साइड में लिखा है लेफ्ट साइड में कार के --